ये एक छोटी सी नाव में जो नाव पीले कलर की हैं उसमे बैठ कर जा रहे हैं और व्यक्ति ने एक काले कलर का आ मम हथौड़ा रखा हुआ है जो की--

जहाज में जो घर बना हुआ हैं वो सफेद और लाल रंग का हैं और उसके ऊपर काफी सारी मशीनें हैं।

यह एक द्वार की तस्वीर हैं जो की सफेद और नीले रंग का हैं।